अअ ठंड से बचनेचते ठंड से बचने का प्रयास कर रहे है यहाँ पर आग तापते हुए कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे मुझे एक बहुत बड़ा पैलेस दिखाई दे रहा है ओर इस पैलेस को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है|

और यहाँ पर नीचे कारपेट बिछा हुआ है जो ग्रीन कलर का कारपेट दिख रहा है।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

ये सब लोग यहां योगा कर रहें है हॉल में।

इस तस्वीर में मुझे एक खुला हुआ मैदान दिखाई दे रहा है।

जो यहाँ पर बैठ कर एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मैदान के अंदर।

इस तस्वीर में मुझे एक मेडिकल शॉप दिखाई दे रही है और ये मेडिकल शॉप है जिसका नाम है का मेडिकल और मेडिकल स्टोर |